और तीन चार बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

और एक जो मेकेनिक है वो उसको चेक कर रहा है क्या चीज है।

अवार्ड भी रखे हुए हैं और सामने दो बोर्ड लगे हुए हैं।

और हिरन का रंग भी पिला है और हिरन पीछे की तरफ कुछ देख रही है।

और कूलर भी रखा हुआ है।

ड्राइंग में तिरंगा बना रहे हैं तीनों।

एक के हाथ में बैंड है येलो कलर का।

ये एक बैडमिंटन का गेम हो रहा है।

आदमी खड़े हुए हैं एक आदमी रिटर्निंग आ रहा है।